इस तस्वीर में मुझे रेल की पटरीयां रेल स्टे रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है जिसमें रेल की पटरियां है और विशाल बड़े बड़े --

फर्नीचर सेट है जिसमें कुर्सीया लगाई गई है और ऊपर की तरफ से लाइट ही लाइट लगाई गई है यह एक रात का दृश्य लग रहा है और

इस तस्वीर में मुझे जामसर नाम गांव का--

पुरानी बाइक सेल करने के लिए लाई गई है ऐसा फील लग रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े ये और पैरों में पहनने के लिए मोजे हुए बच्चों के समान दिखाई दे रहे है और पीछे की तरफ --

और फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक का सामान वाशिंग मशीनें दिखाई दे रहा है यह इसकी न्यू ओपनिंग हुई लगती है गुब्बारे लगाए गए हैं।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

और ये एक देवी स्थान भी हो सकता है और बारी और गुब्बारे कई सारे लगाए हैं रंग बिरंगे।

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान नजर आ रही है जोकि एक लंबा हॉल है और इसमें एक स्कूटी खड़ी हुई है और बाहर की तरफ एक कुर्सी --

इस तस्वीर में मुझे नजर आ रहा है कि ये एक कोई--

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ी ट्रक रोलर मशीन दिखाई दे रही है जिसकी --